ये एक एस.बी.आई. बैंक दिख रही है गेट दिख रहे है एक वाइट कलर का चैनल गेट दिख रहा है एक ग्रीन कलर का दिख रहा है एक बाइक खड़ी हुई दिख रही है।

ये एक घर दिख रहा है जहां पर टेंट लगा हुआ हैव्हाइट कलर का बहुत सारी लाइट जलती है दो चार लोग दिख रहा हैबहुत सारी गाड़ियां दिख रही है।

एक ढेले पे भगोना रखा हुआ है तीन चार रेड कलर के कुर्सी रखी हुई दिख रही है पीछे एक घर दिख रहा हैं।

ये एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही हैगेट दिख रहा हैबहुत सारेबहुत सारे खिड़कियां दिख रही है।

एक लड़का दिख रहा है जो कि सेल्फी ले रहा है उसने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और डार्क ब्लू कलर की टोपी पहन रखी है पीछे बहुत सारे प पेड़ दिख रहे हैं।

कुलर दिख रहे हैऊपर एक हैलोजन लगा हुआ दिख रहा हैप्लास्टिक की पाइप दिख रहे है एक ब्लै--

दो-तीन लेडिसे दिख रही है बहुत सारी लाइट जलती हुई दिख रही है साइड में भी एक दुकान दिख रही हैऊपर चद्दर लगी हुई है।

ये एक स्कूल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं किसी के पास सु पिंक कलर की शीट रखी है किसी के हाथ में फेवी फेवीकॉल है।

साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है बहुत ही सारी खिड़कियां दिख रही है लाईट के वायर दिख रहे है एक लोहे का खंबा दिख रहा है पेड़ दिख रहे है।

यह एक मंदिर दिख रहा है इसमें एक बडी मूर्ति दिख रही है दो छोटे मूर्ति दिख रही है लाईट जलती हुई दिख रही है दो गेट दिख रहे है एक लकड़ी का काउंटर बना हुआ इसके ऊपर --

चार पिलर दिख रहे हैवाइट कलर के नीचे एक दीवार दिख रही है वहा पर रेड और ब्लू कलर पुता हुआ है।

यह एक खाली मेदान दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लेडिसे खड़ी हुई दिख रही है कुछ बच्चे भी दिख रहे है और दो जेंट्स भी दिख रहा है।

टंकिया रखी हुई दिख रही है चार एक साईकिल ख रखी है पिछे एक बाल्टी रखी है एक लोडिंग रिक्शा गाडी है लाइट के बाद।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है बहुत सारे बॉक्स रखे हुए दिख रहे हैं कुर्सी रखी हुई है साइड में एक गेट दिख रहा है।

प पौधे लगे है जिसमे कलरफुल फुल उग रहे है किसी मै येलो कलर के फुल उग रहे हैं किसी मे ऑरेंज कलर के किसी मे व्हाइट कलर के --

ये एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि वाइट कलर की है इसके पिलर व्हाइट कलर के पुते हुए हैबहुत सारी खिड़कियां दिख रही है।

बहुत सारी गाडी भी दिख रहे हैंकुछ बाइक दिख रही है एक्टिवा दिख रही हैबादल दिख रहे है।

ये एक गेट दिख रहा है जो की ब्लू कलर का दिख रहा है नीचे का जो गेट है वो ब्लैक कलर का है साइड में एक ब्लू कलर का बैनर लगा हुआ है बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।